पानी जिसने पतली पतली सी ताग बनी हुई है । व्हाइट कलर की । जिसमें बहोत सारे पैकेट में समान सजा कुछ बोतल में रखे हैं कुछ पैन रखी हुई है ।

एक बहोत बड़ा सा पेड़ दिख रहा है जो की काले रंग का है ऊपर आसमान व्हाइट है । उसमे सूरज की छोटी सी गोल सी किरण सी दिख रही है। एक बड़ा सा टावर खड़ा है । जिसमे कुछ चोंगा टाइप लगा हुआ है । तीन नीचे में एक लकड़ी खड़ी है जिसमे एक रस्सी बंधी हुई है ।

जो कि ये ऑरेंज और ग्रीन कलर के दिख रहे है| उसके नीचे मे बॉर्डर ब्लैक कलर का है| सामने में एक शॉपिंग गाड़ी है जिसके अंदर एक रेड कलर के बोरे में प्याज रखी हुई है| दूर में और भी पैकेट सजे हुए हैं| ऊपर लाइट व्हाइट है।

दूसरे ने ब्लाक गंजी ब्लाक पैंट और ब्लाक में रेड अ व्हाइट बॉर्डर वाला जूता पहना है। साइड में बोहोत सारे काँच लगे हैं जिनकी बिड ब्लाक है। काँच में भी लोग दिख रहे हैं।

हार टंगी हुई है फूल की एक वाइट अ फूल में रेड और कुछ ग्रीन अ पत्ते दिए फूल के हार बने हैं एक ऑरेंज कलर का गेंड़ी फूल का बना हुआ है नीचे वाइट कलर का जरी बिछा है ।

साइड में एक घर सा दिख रहा है जो ग्रीन कलर है । बहोत सारे तार लंबे लंबे से है । एक कपड़ा अलगनी में टंग रहा है दूर में नदी दिख रहा है ।